यहाँ पर कुछ ओरते है जोकि बैठी हुई है स्टेज पर और उन्हें रंग बिरंगी साड़ी पहनी हुई है और वो--

कुछ नृत्य का अम दृश्य दिखा रही है और अम यहाँ पर देखिये साड़ी--

देखिये नदी है और नदी के इधर पहले यहाँ पे देखिये रास्ता बना रहा है और इधर अगल-बगल इस्टा--

यहाँ पर मिट्टी के जैसा रास्ता और यहाँ पर देखिए कुछ आदमी जा रहे है जिसमें की किसी एक ने --

बहुत बड़ा-सा बोर्ड लगाया हुआ है जहाँ पे जिओ दोनों तरफ लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे कोई खंभा है।

जो सफेद रंग का रंग किया गया है और बगल में देखिये बड़ा सा पेड़ है और आसमान का रंग नीला है।

और इसमें भी पेड़ पर छोटे - छोटे है और यहाँ पर देखिये बगल में जो पर्दा लगा हुआ है वो सफ़ेद रंग का पर्दा है उसपे --

और इधर देखिये एक आदमी है जो साइकिल ले कर जा रहा है और देखिये ऊपर ट्रांसफारम लगा हुआ है इसमें से कुछ तारे जा रही है और बगल में देखिये घर है जो हरे रंग का घर --

और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक का इधर अ डब्बा रखा गया है जो कि गुलाबी रंग--

पहनी हुई है और एक ने काले रंग की जिन्स पहनी हुई है एक ने नीले रंग की जिन्स पहनी हुई है उनके बगल में--

देखिए यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रगती बुक सेंटर और यहाँ पे देखिए बहुत सारी बुक रखी गयी है।

वो मार्बल का बना हुआ है और अगल -बगल बहुत सारे कार्टून --

और नीचे देखिए शटर भी लाल रंग का है और वो देखिए बगल में मिट्टी जैसा रास्ता गया है और यहाँ पे देखिए दो मोटर साइकल खड़ी हैं।

और यहाँ पर देखिए टिने का एक बैटरी जैसा बहुत बड़ा सा हैं और देखिए अगल - बगल --

काले रंग का है और बगल में देखिए बहुत बड़ा सा ट्रांसफॉर्म जिससे बोहत सारी तारे गई हैं।

और एक गाउन पहना हुआ है सफेद रंग का और यहाँ पे देखिए छोटा- सा बच्चा भी है जिसने टी- शर्ट और --